पाव है और यहाँ पे देखिए--

यह देखिए यह एक चलती फिरती सड़क है।

देखिए बहुत बड़ा ये भी पार्क है यहाँ पे देखिए--

और देखिए पेड़ जो है नीचे से पेंट भी किए हुए--

और एक पर्स भी रखा गया है जो कि एक लेडी --

और देखिए पीछे भी ब्लैक कार्ड लगी हुई हैं।

थैले हैं और देखिए एक टावर भी दिखाई--

गोल है आगे से चौकर है और देखिए बहुत साफ सुथरी या सिमिंग पूल है।

और देखिए एक फिश भी दिखाई दे रही है जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रही --

यह देखिए यह पेट्रोल पंप है और देखिए यहाँ पे बाहर एक---

फायर बुझाने वाला रखा हुआ है और एक ऑटो दिखाई दे रही है बाहर एक--

कार खड़ी है और देखिए काफी आदमी है जो --

यह देखिए यह एक दुकान है।

काफी भरी हुई दिखाई दे रही हैं।

तखने वाला फ्रिज भी है।

और देखिए देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।

प्राचीन तरह से दिखाई दे रही है।

यह देखिए यह एक रेस्टोरेंट या होटल जैसा दिखाई दे रहा है जो देखिए टेबल पे--

यह देखिए यह जो सिंहासन है जो देखने में काफी--

अच्छा लग रहा है और जो यह सिल्वर कलर की--

यह भी बहुत अच्छी लग रही हैं।

यह देखिए एक मॉल जैसा है।

जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएँ मिलती हैं।

जो कि काफी भरी हुई हैं।

सामने छोटे-छोटे टेडी बियर बॉल --

यह देखिए एक घर है।

यह देखिए एक रेस्टोरेंट है।

और सामने से देखिए--

ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ।

जो कि देखिए यहाँ पे बहुत तरह की कप दिखाई दे रही है।

और देखिए बाहर चेयर लगी हुई है।

दुकान दिखाई दे रही है और यहाँ पे लड़के लड़कियाँ --

के वस्त्र दिखाई दे रहे हैं।

पेंट किया गया है और बाहर--

चेयर लगी हुई है जिस पे की वर वधु बैठते हैं।

और एक प्लांट जो बाहर की ओर बिखरा हुआ है।

यह देखिए यह एक अस्पताल है और देखिए यहाँ पे टीकेकरण हो रहे हैं।

जो कि एक महिला खड़ी है ताकि उसका भी--

यह एक देखिए मस्जिद जैसा दिखाई दे रहा हैं।

और देखिए इसमें जो वाइट और ग्रीन कलर का--

फोटो दिखाई दे रहा--

जो कि सबको बता रहा --

और देखिए सबसे ज्यादा ब्लू कलर का कपड़ा--

रखा हुआ है ।

वह काफी अच्छी लग रही है और--

यह देखिए मार्केट है और यह देखिए--

और यह जो स्कूल है ।

रेड मोबाईल हाथ में लिए हुए है ।

और पीछे से एक हेयर ड्रायर लिए हुए --

आदमी खड़ा है जो कि उसकी --

होटल दिखाई दे रहा है।

और जो गोल्डन कलर की चेयर हैं वो भी देखने में काफी--

और ऊपर की जो लाइटें हैं वो बहुत अच्छी लग रही है।

और कैफे में जो कॉफी मिलता है वो भी--

काफी अच्छी होती है और--

दो दिखाई दे रहे हैं और--

बीच से रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

यह देखिए यह कमरा है।

जो दीवार पे जो वॉलपेपर लगा हुआ--

व्हाइट कर और एक सफेद--

पीटी सिखाया जा रहा है।

मैदान है और--

यह एक खेल का मैदान--

होटल या कमरा जैसा--

सामने से ये--

और दो आदमी इसमें --

स्नान कर रहे हैं और यह बिल्कुल--

जो कि देखने में काफी--

पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ --